पंखे लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

यहाँ पर देखिये बहुत सारे रिक्शा खड़े हुये हैं और कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यह एक बहुत सुंदर सा मकान बना हुआ है यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक बागीचा भी बना हुआ है जिसमें कुछ छोटे-छोटे पौधे लगे हैं और ज़मीन पर हरी-हरी घाँस हैं।

आने-जाने के लिए रास्ता बनी हुई है उसपे लाल पीले रंग के गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य मे हम देख पा रहे हैं एक वाटर पार्क का दृश्य है। यहाँ पर एक पानी का पुल बना हुआ है जिसमे की झूले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ बड़े-बड़े से वृक्ष दिखाई दे रहे।

मस्जिद देखने में बहुत सुंदर लग रही है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यह एक बहुत बड़ा सा हाल बना हुआ है जो काफी सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर सामने की तरफ बैठने के लिए सोफ़े लगे हुए हैं और दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दुकाने बनी हैं जिसमे की स्टेट बैंक ए.टी.एम. है। यहाँ पर ए.टी.एम. के बाहर लाइन लगी हुई दिख रही है। बाहर की तरफ एक बाइक खड़ी दिख रही है।

इस दृशय में हम देख पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी से नदी दिख रही है नदी के दोनों तरफ कुछ टीला जैसे दिखाई दे रहे हैं जिस पर की थोड़ी-थोड़ी घांस लगी दिख रही है।

नदी के बीच में एक पत्थर रखा हुआ है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पर हम देख पा रहे एक घर बना हुआ है और ऊपर एक रेलिंग लगी हुई है। यहां पर एक छज्जा जैसा बनाया जिसके ऊपर से एक बेल लगी है। बेल में रंग-बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं।

इमारत बनी हुई है जिसमें की बहुत सारी खिड़कियाँ लगी हुई दिख रही है और दूर पर कुछ बड़े-बड़े से पेड़ पर देख रहे है जमीन पर कुछ पानी भरा हुआ है जमीन पर कुछ हरी- भरी घास है और कहीं पर घास सुखी हुई दिख रही हैं।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

इस इसरो मे हम देख पा रहे हैं। यहाँ एक हॉल बना हुआ है देखिये जिसमे की दो ई रिक्शा खड़े हुये हैं। एक का रंग काला और एक का रंग आसमानी दिखाई दे रहा है। यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है। जिस पर की ई रिक्शा बना हुआ है।